-- और एक खाली सूनसान- सी बिल्डिंग खड़ी कर दी यहाँ पे ईटें -विटे लगी है यहाँ पे ग्रिल सा बना दिया है कलाकार--

--और इसमें बीच मे भी एक कलश लगा दिया है व्हाइट कलर के फूल लगा दिए है रेड कलर के भी लटकन लगा दिए है रेडीमैड बनी हुई है।

ये भी सफेद कलर का फूल है देखने मे बहुत सुंदर लगा इनको हाथों मे पकड़ रखा है एक भैया ने--

दो बाइक खड़ी हुई हैं यहाँ पे हेलमेंट उनका रखा हुआ है स्टैन्ड पे लगा देना और क्या कहते हैं स्टैन्ड पे लगा--

यहाँ पर गेस्टहाउस काम कर चादर बिछी हुई है यहाँ पर सोफासेट लगी हुई हैं।

--और डोर भी लगा हुआ है टेबल भी लगी हुई है यहाँ पे और ये कंप्युटर चल रहा है और सी_ई_ओ ऑफिस पी_सी_ओ भी चल रहा है माउस भी कंप्युटर --

फूल की शॉप है यहाँ पे सारे कलर के फ्लॉवर लगे हुए है रेड है गुलाब के है ग्रीन पत्तिया भी लगी हुई है।